यहाँ पे एक ऑटोरिक्शा खड़ा हुआ है| उसके पड़ोस में कागज पड़े हुए है| रिक्शे के दाएं ओर बोरी पड़ी हुई है दो बोरी के पड़ोस में साइकिल खड़ी हुई है।

और गार्डन के अंदर काफी आदमी खड़े हुए है। एक गाड़ी खड़ी है जो सफेद रंग की है। कुछ गुलदस्ता रखे हुए है जो लाल रंग के है। काफी सुंदर है।